और पीछे की तरफ दो खिड़कियां लगी हैं दीवार पर सफ़ेद पेंट पुता हुआ है।

बड़ा सा ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस की होल की छत पर बहोत सी लाइटे जल रही हैं।

बड़ी सी लाइबरी बनी हुई है। लाइब्री की ई होल के ए अंदर बहोत सारी कि --

कुछ मुर्गियाँ खड़ी हुई हैं। उन मुर्गियों के बगल में बाल्टी और टप में कुछ पेड़-पौधे ऐ लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है स्टेशन के ऐ ये दूसरी तरफ बोहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और एक किराने की दुकान है।